मंगलवार और शनिवार को पूजा करते हैं और कई लोग व्रत भी रखते हैं हनुमान जी --

सुंदर दृश्य है जहाँ पर यह पेड़ इस दृश्य को और बढ़ावा दे रहा है और पीछे पीछे यह पहाड़ जो दिखाई दे रहा है यह बहुत सुंदरता से खुद को दर्शा रहा है।

इस दृश्य में जान डाल रहा है और यह आसमान भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो पीछे तस्वीरें दीवार पर बनाई गई है वह बहुत ही सुंदर और आकर्षित हैं।

यहाँ पर रंगों का काफी ध्यान भी दिया गया है यह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है।

नाव पर बैठ कर इस नस इस झील का मनोरंजन ले रहे हैं और इस झील की सुंदरता का लुफ्त उटा रहे हैं इसके पास में मुझे हरयाली भी नजर आ रही है जोकि --

यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदरता से गंगा नदी का दृश्य दिखाया जा रहा है यहाँ पर --

यह एक जिम का दृश्य नजर आ रहा है यहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर व्यायाम करते हैं और --

और सर्दियों के वक्त में कॉफ़ी

हम लोग हम लोग नास्ते में पराठे के साथ चाय को पीना बहुत अच्छा अच्छा मानते हैं और मुझे मुझे आलू के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं |